नीचे कुछ प्याजे भी रखी हुई दिखाई पड़ रही हैं बाल्टी में पानी है बड़े छोटे टब दिखाई पड़ रहे हैं।

जिसके गोल में सर्कल बनाया हुआ है सर्किल का रंग ब्लैक है।

इस दृश्य में एक आदमी है जो हमारी ओर देख रहा है।

कुछ बड़े बड़े डेरी मिल्क के डब्बे रखे हुए हैं कुछ फाइव स्टार के डब्बे रखे हुए हैं कुछ बॉर्नविटा के डब्बे रखे हुए हैं।

इसके बगल में कुछ सामाने रखी हुई है कुछ सामानों में कुछ बोरे और कुछ बॉटल रखे हुए हैं।

एक तार है जिसपे बहोत सारे छोटे छोटे बैलू--

इसमें नकली फूल रखे हुए हैं फूलों का रंग उजाला है और लाल है।

उसके बगल में एक और घर दिखाई पड़ रहा है बहोत सारे घास दिखाई पड़ रहे है घास का रंग हरा है।

अंदर में बहोत सारी रेकें बनाई हुई हैं जिसमें बहोत सारे समान रखे हुए हैं।

इसके चारों तरफ डिज़ाइने बनाई हुई दिखाई पड़ रही हैं।

का रंग लाल है जिस पे एक और मशीन है उसका भी रंग लाल है।

बगल में एक और आदमी है जिसने चेक शर्ट पहनी हुई है।

बहुत सारी घांस है का रंग हरा है कुछ घास का रंग पीला भी दिखाई पड़ रहा है।

इस दृश्य में एक बो पोस्टर लगाए हुआ हैं जिसका रंग ब्लैक --

ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ये सारा सामान रखा हुआ दिखाई पड़--

सभी पे रिबन भी लगाया हुआ है कुछ कुर्सी पे लाल रिबन लगाए हुए है तो कुछ कुर्सी पे ब्लू लगाए हुए है।

प टेंट है टेंट का रंग उजला ब्लू है ऊपर में भी लगाया हुआ छत पे टेंट है।

कोरियर सेवा लिखने का रंग ब्लू है नीचे दो आदमी हैं।

दो तीन बड़े बड़े पोस्टर ऊपर में लगाए हुए हैं जिस पर बजरंग अरे गणेश जी का फोटो लगाया हुआ है।

राजशाही चिकन मटन मछली सब के बाहर की फोटो है।

कुर्सियां है कुर्सियों का रंग ब्लैक है टेबल है।

जिसपे सेवंथ मीटिंग ऑफ ईस्टर्न रिलिजन काउंसिल्स लिखा हुआ है बगल में दो प्रोजेक्टर वाले टी_वी लगाए हुए हैं।

जिसपे एक एक पानी का बोतल रखा हुआ है।

कार के टायर का रंग उजला और काला दिखाई पड़--

कुछ लाइटें लगी हुई हैं लाइट का रंग लाल ऑरेंज ब्लू ब्लू लाल है।

इसमें से बहुत सारे पत्ते निकले हुए हैं पत्तों का रंग हरा है।